यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कुछ ज्वैलरी दिखा रही हैं पूरे शोपीस लगे हुए हैं।

नीचे लाल कलर के स्टॉपर्स भी रखे हुए हैं।

यह दिल्ली का सीन है यह सीन जो है वो दिन का नजर आ रहा है।

यहां पर ऊपर बिल्डिंग में प्रधान--

राउंड नेक में टी-शर्ट्स टंगी हुई है।

यहां पर हमें दिख रही है इस बिल्डिंग में कई सरी शॉप्स है।

वाइन एंड बियर की शॉप नीचे दिख रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह किसी ऑफिस का सीन नजर आ रहा है जिसमें दीवाल पर।

यहां पर बैंक खाता खुलता है पैसा जमा--

क्रॉसवर्ड नाम से इस शॉप के अन्दर कई सारे कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं।

सोने का कैटालॉग दिखा रही है।

यहां पर वी टू का बोर्ड लगा हुआ है।

दो महिलाएं यहाँ पे कसरत करती हुई नजर आ रही है एक महिला।

गोल गोल घुमा रही है हाथ से मशीन को --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह किसी वादीयो का सीन लग रहा है।